यह फोटो एक कपड़ो की दुकान की है जिसमें बहोत सारी स्वेटर टंगी हुई है इनमे से --

ये फोटो मछली शॉप की है यहाँ पर बोहोत सारी मछलियाँ रखी हुई है।

ये फोटो केनरा बैंक की है इस बैंक के शामने दो बाइक खड़ी हुई हैं।